एक सड़क पुला है पुला लोहा से घिरा हुआ है। उसके बगल में पानी टंकी है बगल मे बहुत सारे घरे हैं। बगल मे गंगा जी है बहुत सारे पेड़े है असमाने यहां दिख रहे हैं।

स्लीपर बस है। बहुत सुन्दर बसे है। और शीशा बहुत सुन्दर है। एक सीढ़ियां भी है उसपे बगल मे साइकिल लगी है।